और सभी कुर्सियों का रंग सफेद --

इस फोतो में एक पंडाल है जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है।